यहां पे अभी कोई ग्राहक नहीं है और ना ही कोई दुकानदार है।

और यहां पे ऊपर पंखे लग रहे हैं लाइटिंग के साथ और नीचे चेयर हैं और टेबल हैं।

यह एक हरियाणा रोहतक का स्पेशल टास्क पुलिस स्टेशन है यहां पे अभी कोई भी नहीं दिख रहा--

और कभी अभी कोई इंसान यहां नहीं दिख रहा--

और यहां पे काफी मशीनें भी हैं जिसमें लकड़ियों की--

यह फोटो एक मेन रोड की है जहां आइट साइड में--

और यहां बहोत ज्यादा सब्जियां है काफी बड़ी मंडी है।

बेंच भी हैं और दो महिलाएं पार्क में खड़ी हो के बातें कर रही हैं।

भगवान खड़े हैं उनके हाथ में उनका अस्त्र है भगवान ने एक पोशाक पहनी है।

जहां पे अभी कोई श्रद्धालु तो नहीं हैं।

यह फोटो किसी ऑफिस की है यहां पे कंप्यूटर है माउस है स्टेपलर है पेन हैं।

और यहां पे दो वर्कर वर्क कर रहे हैं अपना--

यह एक मसाज थेरेपिस्ट का--

यह एक हॉस्पिटल की फोटो है।

बीच में एक छत दी गई है चेयर दी गई हैं बेंचेस है।

और यहां पे मेकअप का भी सामान उपलब्ध हैं।

जिसमें काफी बड़ी बड़ी मशीनें दिखाई दे रही हैं।

यह एक सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया का बैंक है जहां ऊपर--

यह एक ज्वैलरी शॉप है जहां का नाम अमरकला ज्वेलर्स है।